ये एक दो मंजिल का मकान है।

नर्सिंग होम मेरे शायद ये शामली में है।

दो तीन बाइक भी खड़ी है यह काफी अच्छा नर्सिंग होम है इसमें मैं गया भी हूं।

यह एक घर की बैठक है उस बैठक के बाहर चप्पल उतरी हुई है उसकी --

यहां पर सोफे बीच में मेज वगैरह रखी है किसी का बर्थडे का प्रोग्राम हो रहा है।

इस समुद्र के किनारे एक ये नाव भी छोड़ रखी--

ये किसी घर का लॉबी है।

और एक पार्क के चारों तरफ दो तरफ़ दीवाल पे इसमें थोड़े गुलदस्ते भी रखें गई है।

ये इंजीनियर इनको बता रहा है जो जो काम करना है वो ये काम कर रहे हैं।

वो पंखे तो हमे नजर आ रहे हैं।

रोड का चलते का फोटो क्लिक कर रखा है।

रोड पे दो आदमी अब चल रहे--

ये हापुड़ वालों का मशहूर ढाबा है इस ढाबे के बाहर--

शायद ऐसा लग रहा है कि कोई स्कूल का लड़का है उसकी--

यहां पर बहोत सारी लेडी खड़ी हुई है।

एक बच्ची भी खड़ी हुई है। एक लेडी जो है ये बैठी हुई है। ये बच्ची इस लेडी के हाथ में कुछ दे रही है।